इस पिक्चर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है जो कि नीले रंग का है और उसके बगल में हरे-हरे पेड़ दिखाई पड़ रहे है और सामने तिमंजिला मकान बना हुआ है उसके नीचे कुछ लोग खड़े हुए है ऊपर आसमान का रंग ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है।

इस पिक्चर में एक झरना दिखाई पड़ रहा है जिसमें पानी गिर रहा है और सामने बहुत सारा पानी भरा हुआ है और पानी का कलर ग्रे कलर का है और सामने कुछ हरी-हरी घाँस भी दिखाई पड़ रही है और आसमान का रंग नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

मे एक कमरा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बहुत से लोग दिखाई पड़ रहे है सामने दो छोटे बच्चे है जिनके हाथ में मोमबत्तियां है और मोमबत्तियां जल रही है जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे है पीछे एक ट्यूबलाइट लगी हुई है ऊपर एक पंखा भी दिखाई पड़ रहा है।